साइड में स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

पर खूब सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं अलग अलग तरीके के।

ये लाइट जल रही है और इसमें खूब सारे स्तंभ बने हुए हैं।

यह फोटो किसी कैफ़े की है जिसपे बाहर क्या नाम है शीशे की डोर लगा हुआ है।